तब यहां से खरीदा जा सकता है यहां एक कोने में फल भी रखे हुए हैं कुछ ग्राहक आकर यहां पे खरीदारी कर रहे हैं।

यहाँ पर एक लड़का खड़ा है जो शायद धूप सेंक रहा है सामने हरा भरा मैदान है जहाँ बच्चे --

यह एक रेस्टोरेंट का कमरा मालूम होता है यहां कुर्सीया और मेज रखे हुए हैं तथा सजावट के लिए एक लाल रंग का --

बाइक खड़ी है कॉलेज की बिल्डिंग दो मंजिला है उसके बाहर एक बड़ा सा काले रंग का गेट है।

मांसाहारी दोनों तरीके से बनाई जाती है मांसाहारी में मछली का इस्तेमाल किया जाता है तथा शाकाहारी में चावल का इस्तेमाल किया जाता है।

इसको चटनी के साथ खाया जाता है जिसका नाम वसा भी होता है।

बाहर कुर्सीयां और मेज लगे हुए हैं जहां पे घर वाले आ कर आराम करते हैं।

सिद्धियां प्राप्त की तथा एक नए धर्म को प्रचलित पूरे देश में किया--

कार सर्विस स्टेशन में गाड़ी को धोने के अलावा उसे ठीक करने उस पर रंग करने--

इस पार्लर के बाहर कुर्सियां रखी हुईं हैं जहां पर लोग बैठकर आइसक्रीम का लुफ्त उठा सकते हैं।

यह कोई नृत्य का प्रशिक्षण केंद्र भी हो सकता है।